ये विमल नर्सिंग होम के नाम से एक हॉस्पिटल है और इसके आगे से बिल्डिंग बहुत अच्छा बना हुआ है और इसमें शीशे भी लगे हुए हैं ।

और इसकी अगली बगली में दो दरवाजे भी है और इसकी बिल्डिंग में भी ऊपर नीचे भी दरवाजे हैं।

देखिए ये एक पेट्रोल पम्प है और इसमे कई लोग पेट्रोल भरा रहे हैं गाड़ी में अपनी में और उधर में एक चार पहिए गाड़ी भी खड़ी है मारुति।

देखिये ये एक नदी सी नज़र आर ही है और इसके ऊपर कुछ ये पंच्ची उड़ते हुऐ बगुले हैं जो उड़ते हुए नज़र आर रहे हैं।

देखिये यह एक दुकान है जो स्नेह मोबाइल एंड बूक स्टॉल के नाम से है।

और इसके आगे एक लड़का है जो उसके पीछे बैग लटका हुआ है और कुछ बच्चे भी घूमते नजर आ रहे हैं और इधर में कुछ बच्चे इधर-उधर घूमते भी नजर आ रहे हैं।

देखिए यह एक घर है और इस पर एक वॉश बिसेन लगा हुआ है और इसके साइड में एक दुकान सी नजर आ रही है और इसमें एक बोर्ड भी लगा हुआ है।